जो देखने में अच्छा लग रहा है।

इसमें बच्चा लोग घूम फिर रहा है।

एक दो आदमी दो आदमी खड़ा भी है।

बहुत सारे गुब्बारा लगा हुआ है।

जिसमें शायद में ठंड --

फ्रिज में ठंडा रखा हुआ है।

और दो मोटर साइकिल लगा हुआ है साइकिल भी --